यह एक सड़क है सड़क बहुत बड़ा है।

घर का रंग सफेद और काला है खंडर के ऊपर हरी हरी घास है।

रहस्टूडेंट का रंग लाल है और यहां पर बैलून से सजाया हुआ है।

जिम का रंग काला है और यहां पे बहुत सारा डंबल भी रखा हुआ है।

अ गेट के सामने एक कुत्ता और एक गाय भी है।

भी है पेड़ बहुत बड़ा है पेड़ में बहुत सारी हरी पत्तियां है।

यहां पे टेबल भी रखा हुआ है टेबल काले रंग का है।

मंदिल कलरफुल है और यह गणेश जी का मंदिल है।

यहां पर बहुत सारा लाइट भी है डी_जे भी है।

यह एक बस स्टॉप है यहां पे दो बस देख रही है।

एक चश्मा भी है एक लॉकेट भी पहना हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान बहुत बड़ा है।

और बहुत सारा पेड़ भी है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग सब्जियां भी ले रहे हैं और यहाँ पर पटल भी रखा हुआ है।